इसमें लोग बाल कटवा रहे हैं।

दीवार का रंग पिस्ता ग्रीन है।

ये एक तीर्थ स्थल ही लगती है सामने मंदिर बना हुआ है।

बोहोत से लोग वहा पर खड़े हुए हैं।

इसमें रेलिंग्स ग्लास की बनी हुई है।

सामने से दरवाजा भी दिखाई दे रहे है सबसे उपर दो खिडकिया है।

और पीले नील स्टीकर लगे हुए हैं।

कुछ खुली हुई है रैक में कुछ सामान रखा हुआ है।

जिसमे दो लडकी एक लड़का है वो सायद उनका अध्यापक लगता है।

हाथी को पानी मे नहलाया जा रहा है।

और फर्श की घास बिलकुल हरी हरी है।

यह एक मिट्ठी के मैदान का सीन हैं।

उसके पीछे एक ट्रक खड़ा है और पेड़ भी लगे हुए है जो की हरे है।

येहा एक चर्चा हे जहाँ पर क्रिसमस मनई जा रही है सामने दो बाइक खड़ी हुई है।

और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह पिक्चर एक पेशावरी सुपर मार्केट की है।

जहां पर बड़े हरे हरे पेड़ लगे हुए है।

ये अटेलिया किरणा स्टोर हैं।

एक बाइक खड़ी हुई है और एक नीले रंग का ट्रैक्टर भी है।

एक ये आगे जो खड़ा हुआ हे ये रेड कलर --

बेल्ट रखी हुयी है जो ब्राउन और ब्लैक कलर की है ऊपर वॉलेट्स लगे हुए है जेंट्स वॉलेट --

एक स्पीकर भी लगा हुआ हैं।

यह एक टी_वी का शोरूम है। इसमे सामने की ओर दो एल_ई_डी दिखाई दे रहे है। साइड वॉल पर बहुत सारे एल_ई_डी लगे हुए है।

और सामने बहोत छोटे छोटे पौधे और छोटी छोटी घास भी लगी हुई है।

दोनों का रंग एक सा है दोनों का रंग पीला और काला है।

यहाँ कमरे में बहोत से आदमी औरत मौजूद है।

यह मछलियों की दुकान है यहां बहोत सारी मछलियां हवे।

इसने ला काले रंग के कपड़े पेहने हुए है।

और एक आधी पीली भी दिखाई दे रही है।

जो कि शीशे की हैं नीचे एक बहुत बड़ा दरवाजा है।

साइड में बालकनी भी बनी हुई हैं।